कहीं जाता पूरा भाव खड़ा होके फोटो खिचारा घडी वडी पेहेनले बा। पेड़ वेड भी बा आगे पीछे। आं जीन्स पहीनले बा। का करे जाता कहीं।

और ई घरवा बहुत दिन का हो गइल बा। ई बहुत रोड़े क किनारे बा का। ई पेंट -उंट करे के खोजता।

और पेड़ वेड भी है उसमें मूर्ति बनी हुई है।

अन्दर जाने का रास्ता है।

उसपे कोई बैठा वैठा नहीं है।

ये कहीं का बागीचा है और यहाँ पे बकरी बैठी हुई है ये काले और सफ़ेद कलर की है।

पेड़ है। रोड है और उसके सामने चरपैया आ रहा है उसके बगल में बिल्डिंग उल्डिंग बन रहा है और पेड़ भी है।

यहाँ लोग देख रहे हैं। कुर्सी-उर्सी की भी सुविधा अच्छी है।